टेबल के ऊपर डॉगी को लेटा रखा है और इसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे है।

अह क्रीम कलर का है और इस पे लिखा हुआ है क्लब और--

यहां पे एक आदमी कोई अं करतब दिखा रहा--

यहां ये कोई मॉल है ड्रेसेस का --

और येलो कलर की बस है इसके अंदर के पैसेंजर नजर आ रहे हैं शीशे के सामने फ्रंट से दिखाई दे रहा है।

और पिज़्ज़ा की पिक्स दिखाइ दे रही है पिज़्ज़ा कैफे है ये।

सामने सीनरीज लगी है जिसमें एक पे--

ऊपर फ्लावर्स के डेकोरेट किया है दो लोग बाहर खड़े हुए जैकेट और--

इसमें दो लोग बैठे हुए एक काम कर रहा है एक तरफ और दूसरा दूसरी साइड पर कुछ काम कर रहा है।

ये जो हमें दिखाई दे रहे है इस एरिया में जो लोग दिखाई दे रहे है खाली मैदान जैसा दिख रहा है। सामने कुछ बिल्डिंगस दिखाई दे रही है।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

यहां पे हमें कुछ टाइल्स जैसा दिख रहा है और एक बड़ा सा बाउल एक बॉल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर --

यहां पे टू व्हीलर ट्रैवल का साइन दिखाई दे रहा है।

इसका शिशा भी दिखाई दे रहा है शायद अंदर कोई आदमी इसके बैठा हुआ--

यहां पे हमे दो लोग नीलिव दिखाई दे रहे आगे की तरफ आते हुए एक के हाथ में कुछ पेपर टाइप पकड़ा हुआ है।

और एक ने जैकेट डाली हुई है पहन डाली हुई है दो लोग दूसरी साइड खड़े हैं किसी --